इंग्लिश लिखा हुआ काउंटर बना हुआ आप देखिये एक बोल रहा आदमी है जो कुछ लोइ की बना रहे हैं और देखिए यहां पे एक आदमी है जो कि --

खाने के लिए खड़ा है और देखिए उधर भी फोटो लगी हुई --

यह देखिए चिड़िया खाना या किसी पार्क का सी इमेज है।

इसको प्लेटफार्म भी केहते हैंऔर देखिए इसे पटरीयां के पास जो रहती है जगह वहां पे लोग चलते हुए नजर आ रहे हैंऔर देखिए इधर एक --

एका द्वार उसको जो बनाया जाता है टेंट की मदद से उसपे प्रणाम लिखा हुआ है।